बोहोत ऊँचे-ऊँचे पेड़ भी आप यहाँ पे देख सकते --

जैसे की आप सामने देख सकते हैं यहाँ एक एनुअल फंक्शन रखा गया है जो की ए ज --

देखिये आप सब देख सकते हैं यहाँ सब एक घर को बनाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कुछ मिस्त्रीयो के हाथ में --

शोरूम नज़र आ रहा है जिसमें टू व्हीलर बाइक्स बिकती हैं और ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है।

इस इमेज में आप देख सकते हो की यह एक ग्राउंड की इमेज है जिसमें बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो की क्रिकेट खेल रहे हैं आप देख सकते हैं सामने एक युवक खड़ा हुआ है।

साड़ी का स्टोर है जहां पे आपको बोहोत सारी साड़ियां रखी हुई दिखाई दे रही होंगी जिसमे से --

टूटी हुई नाव भी नज़र आ रही होंगी पास ही में आपको बहोत बड़े खेत भी दिखाई दे रहे होंगे।